ये एक चित्र है इस चित्र में राधे -कृष्णा की मूर्ति दिख रही हैं ।

ये एक चित्र है इस चित्र मे एयरटेल का बोर्ड दिख रहा है।

--पीछे इसमे बादल है बादल दिख रहा है इसकी जमीन मट्टी वाली है।

ये एक चित्र है ये एक चित्र है इसमे मजीद दिख रही है मजीद का गेट दिख रहा है पर्पल कलर का--

ये एक चित्र है इस चित्र मे फर्श है फर्श पे दो आदमी सफाई कर रहे हैं।

--तीन चार तरह की येलो व्हाइट कलर की मिठाई रखी हुई--

--चट्टानें है बड़ी चट्टान रखी है पिंक कलर की चट्टान दिख रही है छोटे कलर के पत्थर है वो भी पिंक कलर के है।

ये एक चित्र है इस चित्र मे स्टेज है दो काउच रखे है पीछे ऑरेंज कलर का पर्दा डला है आठ गमले है गमले ग्रीन कलर के है।

ये एक चित्र है इस चित्र में तीन अ मशीने रखी हैं।

ये एक चित्र है जिस चित्र मे डॉग कुत्ता दिख रहा है।

वहाँ चेयर लगी है बहुत सारी व्हाइट कलर की एक लेडी ग्रीन कलर की साड़ी पहने खड़ी हैं।

जो आईडिया फॉर जी है लिखा हुआ है उसपे कांच पे उसके शटर येलो कलर के है उसकी सीढ़िया ब्राउन और व्हाइट कलर की है।